यहां ऊपर पूरा ऐ_सी है।

बिल्डिंग है उसके आगे दो बड़े बड़े पेड़ हैं यह इंडिया पोस्ट का बिल्डिंग है।